दीवार पर बर्गर्स फ्राइज जूस कॉफी और किचन आइटम्स के कार्टून स्टाइल्स चित्र बने हैं।

इस तस्वीर में एक कक्षा या क्लासरूम दिख रहा है रूम के अंदर लकड़ी के डेस्क और बेंच लगे हुए हैं जो ट्रेडिशनल स्कूल फर्नीचर जैसे लगते हैं।

केक के ऊपर लाल फूल और उड़ाते हुए दिल लगाए गए है।

पीछे किचन का हिस्सा दिख रहा है जहां बर्तन और सामान रखा है।

इस तस्वीर में मुझे टेंट जैसे आकार की दो घर दिखाई दे रहे हैं।

के ऊपर दाम लिखे हुए बोर्ड लगे हुए हैं।

घर है हरे भरे हैं और झोपड़ी जो की बहुत देखने लायक होती है।

कुछ और लोग और व्हेइकल्स भी दिख रहे हैं माहौल शांत और व्यवस्थित लग रहा है।

इस तस्वीर में एक छोटी जनरल स्टोर के अंदर का व्यू दिख रहा है।

तस्वीर में एक ए_टी_एम दिख रहा है।

पीछे दीवार पर लाल रंग के गुब्बारे हार्ट शेप में सजाए गए हैं।

पीछे का हिस्सा थोड़ा अंधेरा है।

शीशे की अलमारीया में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक खूबसूरत पानी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

आसमान नीला है और बादलों से भरा हुआ है जो इस दृश्य को और भी मनमोहन बनाना है।